लग रहा है राउंड मे साइ--

बहुत सुंदर नजारा बहुत आदमी यहाँ पे जाना आना कर रहे--।

इंडिपेंडेंस डे मे लगाते वो लगाते रिबन रिबन मे--

सनसनी हवा खाने भी आता है बच्चे लोग देखो झूला भी झूल रहे है।

देखो बहुत वराइटी के यहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए है।

और बहुत बड़ा कोई शॉप लग रहा है या तो कोई ओकेजन मे आये है।

इसका बैकग्राउंड व्यू तो इतना सुंदर है होटल एक एक नजारा इसका डिजाइनिंग किया हुआ है।

इनको पूरा गंगा लग रहा है पर नदी बहुत बड़ा लग रहा है इधर--

केले का पत्ता रखा हुआ है उसके ऊपर एक पीस डोसा रखा हुआ है बगल मे कटोरीन बाउल --

बहुत अच्छा लग रहा है कलर भी इसका बहुत अच्छा लग--

ग्राउन्ड मे बहुत सारे लेडीज जेन्ट्स है और बाद मे ऐसे आते है देखते है ट्रायल करते है और--

ये एक रेल्वे स्टेशन का नजारा लग रहा है बहुत आदमी यहाँ बैठे हुए है बैठने की जगह भी--

देखो देखते हुए लग रहा है बहुत बड़ा ये टीवी का दुकान है।

केला है पपीता है ग्रीन अंगूर है ब्लैक अंगूर है एप्पल है ऑरेंज है।

ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरा बिल्डिंग है।

टाइमिंग बहुत सुंदर है इसका देखो कोई है नहीं यहाँ पे।